इसमें कई प्रकार के देवाल घड़ी और हाथ में पहनने वाली घड़ी दिखाइ दिखते हैं और यह घड़ी देखने में बहुत ही हमे अच्छा --

नीचे दरी बिछा के बैठ के आराम से योगा कर रही हैं।

इसमें लोग खाते हैं और खा के बहुत ही मजे लेते हैं इसमें कई प्रकार के --

कपड़े मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते--

पोस्टर चिपका है जिसमें सत्ताईस अवर जो यह खुला रहता है।

खेत के सामने इधर हरियाली दिख रही है।

यहां पे कई लोग घूमने के लिए आते जाते रहते हैं।

फिर वापस अपने घर चले जाते हैं।

अच्छा दिखने के लिए पर लगती नहीं है।

इस रूम में कोई भी आदमी आ के रह सकते हैं और जा सकते हैं।

इसमें दो बड़े बड़े टायर लगाए गए है।